कुछ अलमारिओ पर रखे गए हैं और कुछ लटका कर रखे गए हैं।

इससे आगे एक उदति बिछि हुइ हैं और एक आदमी उस पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

नदी के किनारे पर एक लोहे की जालीदार घेराव की गई हैं।

नदी के दूसरी तरफ कई दरक दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर सीढियाँ बनी हुई हैं और कुर्सियां भी लगी हैं।

सामने सड़क है। सड़क के दोनों तरफ हरे-हरे वृक्ष नजर आ रहे है।

इस दृश्य में एक बड़ा-सा रसोई घर दिखाई दे रहा हैं।

इसके पीछे एक ड्रम भी दिखाई दे --

ऊपर कहीं बल्ब प्रकाशित हो रहे हैं।

बिच में भी कही कपड़ो को हेंगर पर टांगा गया है।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

बी.एस. चन्नबसप्पा लिखा हुआ है।

इसके अगल-बगल और दुकाने नजर आ रही है। कुछ खुली हुई है और कुछ बंद दिखाई दे रहे है।

ऊपर एक बड़ा सा साई हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है ।

इसके दोनों तरफ अ बड़े-बड़े मकान नजर आ रहे हैं ।

इस दृश्य में हम देख रहे है एक बड़ा-सा पेट्रोल पंप ।

और पानी बिलकुल ही साफ नजर आ रहा है।

इसके पीछे कई कुर्सिया और मोटर साइकिल भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक बड़ा सा लोहे का डंडा लगाया गया है जिसमे कुछ पंछी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ।